और यह छेत सोनपुर मेला दो हज़ार उनइस लिखा हुआ है। .

यहाँ कोचिंग है कोचिंग में बहुत सारे बच्चें बैठें हुए हैं पढ़ रहे हैं एक कुर्सी है ।

बोर्ड रखा हुआ है | ये एक शिक्षक है पढ़ा रहे हैं |

एक लड़की हाथ में मोबाइल लि हुई है। .

इसमें एक कार है। कार धुला रहा है।

सीढ़ी बनाए गये है। पेड़ पौधा दिख रहा है देखने मे मस्त लग रहा है।